अ इस जगह पे एक पूल है और अ हम्म बहुत सारे पेड़ हैं।

और इन पे कुछ लोग अ खड़े हैं और इन अ हाउस बोटों पे--

इस चट्टान पे अ कुछ लोग चल रहे हैं।

एक बंदा खड़ा शीशे पे देख रहा है।

यहां पे तीन आदमी हैं ये यहां पे सब्जी बेच रहे हैं एक आदमी फूल बेच रहा है।

टेबल पे बहुत सारा सामान है किताबें हैं।

और दो दरवाजे हैं दीवारों पर फ्रेम लगे हुए हैं।

यहां पे सीढ़ियां हैं नीचे भी सीढ़ियां हैं और ऊपर दो झंडे लगे हुए हैं।

जहां पे एक मिट्टी का ढेर हैं।

लाल रंग की गाड़ी ठीक कर रहे हैं।

और उम अ बड़ी-बड़ी चट्टानें हैं।